यहाँ पे येलो कलर का पेंट पुता हुआ मॉर्निंग का टाइम में सूरज उग रहा हैं।

यहाँ पे एक स्कूल लाइव मे भी दिख रहा है यहाँ पे काफी ज्यादा पेड़ पौधे है लगे हुए है बारिश का टाइम है गिला है बाहर मिट्टी-मिट्टी जमी हुई है चारो साइड पेड़-पौधे लगे हुए दिन का टाइम है।

नीचे इसने ब्रोकर पहना हुआ है।

अंदर है वहां पे कुछ बच्चे दौरते हुए नजर आ रहे है।

पत्थरों में काई जमी हुई है दीवार में भी बोहोत ज्यादा ब्लैक एंड ग्रीन ग्रीन कई जमी हुई है दूर-दूर तक यहाँ पे घाँस है।

लोग चलते हुए नजर आ रहै है गाड़ियां खड़ी है टोटोस काफी सारी शॉप्स ओपन है यहाँ पर --

एक लड़का बैटिंग कर रहा है कुछ लोग नीचे बैठे हुए --

नीचे यहाँ पे सेंटिंग लगी हुई है उसके ऊपर लोहा बिछा हुआ --

एक कार खड़ी हुई है दो एक गाड़ियां खड़ी हुई है इसके बिल्डिंग का कलर येलो है यहाँ पे बोहोत सारी विंडो बनी हुई है बादल काफी साफ़ दिख रहे है धुप निखली हुई है।

यह एक गवर्नमेंट स्कूल बना हुआ है यहाँ पे बहुत सारी खिड़कियाँ लगी हुई है बहुत सारे कॉलम्‍स बने हुए --

यह एक मॉल टाइप में यहाँ पे सीढ़िया बनी हुई है राइट से ऊपर जाने के लिए--

यह एक डैम टाइप में है।

डैम से काफी तेज पानी नजर आ रहा है गिरते हुए यहाँ पे काफी सारे बॉक्स बने हुए हैं।

काफी दूर दूर तक पहाड़ बने हुए है यहाँ पे आजु बाजु काफी ज्यादा पेड़-पौधे लगे हुए हैं।

यहाँ पे दो लोग सामने खड़े हुए है एक लेडीज एक जेंट्स है जेंट्स ने कैप लगाया हुआ हैं।

रोड पिचपिलडी हुई है राउंड करना है अंदर की तरफ जा के यहाँ पे काफी ज्यादा पेड़ पौधे लगे हुआ है झड़ी झंकाड़ी लगी हुई हैं।

बिच-बिच में यहाँ काफी ज्यादा पेड़ पौधे लगे हुए है कुछ पत्ते इसके हरे है कुछ पत्ते काले है।

सामने शटर बंद है इसमें चॉक्लेट डेरी मिल्क और ओरीओ वगेरा टोफ्फिएस लगी हुई है यहाँ पे काफी सारे अलग-अलग चॉक्लेट लगी हुई है यहाँ पे किसी का--

पेन वगेरा के बॉक्स भी रखें हुए है यहाँ पे नवरतन तेल वगेरा --

यहाँ पे चार कॉलमस बनी हुई है कुछ मशीन रखी हुई पूरा टेंट हाउस टाइप में बना हुआ है।

यहाँ पे गेंदे की फूल की डेकोरेशन किया गया है यहाँ पे छोटे-छोटे कैंडल्स रखी हुई है एक थाली में --

काफी ज़्यादा प्लेट्स रखी हुई है दो प्लेट्स में राइस रखा हुआ है येलो कलर का प्लेट्स यहाँ पे वाइट कलर के --

यहाँ पे रोडस दिख रही है यहाँ पे सेटअप वगेरा डली हुई है पानी की--

कहीं-कहीं इसमें मिट्टी पड़ी हुई है कहीं-कहीं इसमें घास जमी हुई हैं।

यह एक मॉल है यहाँ पे कुछ लेडीज एक कल सेलर से नीचे चलती हुई नज़र आ रही है यहाँ पे काफी सारे लोग चलते हुए नज़र आ रहे हैं।

चारो साइड हरियाली-हरियाली दिख रही है मॉर्निंग का टाइम है सूरज भी ऊग रहा है।